यह एक फोटो है यहां पर बहुत महिला पूजा कर रही है यह पानी है ये पानी बहुत अच्छा है।

और यहां पर बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ है यहां बहोत हरे भरे जंगल है इस जंगल है।

यह हॉल है इस हॉल में बहुत सारे कुर्सी है यहाँ बहोत सारे ब्रेंच है दो पंखा है।

यह एक पिक्चर है ये पिक्चर बहुत अच्छा है इस पिक्चर में एक आदमी है.

ये फूल भी बहुत अच्छा है ये फूल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है फूल बहुत सारे हैं.

यह एक पिक्चर है ये पिक्चर बहुत अच्छा है ये भगवान जी का मूर्ति है.

यह एक पिक्चर है ये पिक्चर बहोत अच्छा है और पीछे स्टार भी है एक आदमी भी हैं।